और लकड़ी के फर्नीचर से रैक बनी हुई है ऊपर के रैंक में कार्टून और ट्रॉफी रखी हुई है नीचे के रैक में यहां पर--

और यहां पर गोल टैबले लगाई हुई है और टेबलो के बाहर--

यहां पर एक सफेद बिल्डिंग बनी हुई है और--

और उधर एक पेड़ है और जिसपे एक झूला झूलते हुए बच्चा है।

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और--

यहां पर नींबू टमाटर गाजर आलू बैंगन और हरियर धाना रखा हुआ है और कुछ समान यहां पर --

दूर गाड़ी सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

और उसके नीचे कुछ लगाई हुई है और यहां पर कुछ कार्टून रखे हुए है।

यहां पर एक सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है और उसके बाहर का चार दिवारी बनी हुई है और जिसमें लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

का बल्ब लगे हुए हैं और एक यहां पर मेज पे थैला रखा हुआ है जिस पे बी_सी नाम लिखा हुआ है।

और पीछे की ओर यहां पर एक पेड़ है और उसके पीछे बिल्डिंग बनी हुई है और यहां पर रोड है रोड के उस साइड एक सफेद कलर की गाड़ी आ रही है।

और एक यहां पर खिड़की है और उस पे पर्दा लगाया हुआ है।